c ++ में polymorphism के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
polymorphism virtual function
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटू os वर्जन 1110 g ++ कम्पाइलर वर्जन 461
सबसे पहले polymorphism के परिचय से शुरू करते हैं
polymorphism भिन्न forms लेने की क्षमता है
यह समान name के function को भिन्न तरीकों से प्रयोग करने का mechanism है
अब virtual functions देखते हैं
virtual function class का member function है
यह अपनी derived class में ओवर्राइड किया जा सकता है
यह virtual कीवर्ड के साथ घोषित किया गया है
virtual function कॉल रनtime के समय हल की जाती है
अब virtual functions पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने code पहले ही लिख लिया है
अब इसे पूरा समझते हैं
ध्यान दें हमारा file virtual cpp है
इस प्रोग्राम में:
हम रेक्टेंगल पैरेललोग्रामparallelogram और ट्राइएंगल का एरिया ज्ञात करेंगे
यह iostream हमारी header file है
यहाँ मैं std namespace उपयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास एक class parallelogram है
यह base class है
इसमें हमने integer variables width height और ar घोषित किये हैं
ये protected घोषित किये गए हैं
फिर हमारे पास public की तरह घोषित function set _ values हैं
यहाँ हमने दो आर्ग्यूमेंट्स a और b passed किये हैं
फिर हम public members प्रयोग करके protected members access करते हैं
यह हमारा virtual function area है
यहाँ हम parallelogram के area की गणना करते हैं
फिर हमारे पास डिराइव्ड class की तरह class rectangle है
यह base class parallelogram की properties को inherits करता है
यहाँ हम function area को override करते हैं
फिर हम rectangle के area की गणना करते हैं
और value print करते हैं
यहाँ हमारे पास triangle की तरह एक अन्य डिराइव्ड class है
यह भी base class parallelogram की properties को inherits करता है
यहाँ दोबारा से हम function area को override करते हैं
फिर हम triangle के area की गणना करते हैं
और हम value print करते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हम class parallelogram का एक objectof p बनाते हैं
हम यहाँ pointer पैरेलल देख सकते हैं
यह class parallelogram का pointer है
यह base pointer कहलाता है
base class का pointer ड्राइव्ड class के object को इंगित कर सकता है
यहाँ हम rectangle और triangle class के objects बनाते हैं
यहाँ p के address पर पैरेलल को नियत किया गया है
फिर हम आर्ग्यूमेंट्स 3 और 2 pass करते हैं
फिर हम function area को कॉल करते हैं
यहाँ rect के address पर पैरेलल को नियत किया गया है
rect class rectangle का object है
दोबारा हम आर्ग्यूमेंट्स 4 और 5 pass करते हैं
और हम function area को कॉल करते हैं
और and में हम triangle के address पर पैरेलल को नियत करते हैं
trgl
यह class triangle का object है
यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 5 pass करते हैं
और function area कॉल करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब हम program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए type करें: g ++ space virtual cpp spaceo space vir enter दबाएं
type करें: /vir enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
area of parallelogram is 6
area of rectangle is 20
और area of triangle is 15
अपनी slides पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
polymorphism
virtual function उदाहरण virtual int area
एक नियत कार्य में rectangle square और triangle के perimeter की गणना करें
virtual function की तरह perimeter बनायें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है: